बहोत से लोग यहां हमें एक्सरसाइज करते हुए--

ब्रिज पर हमें रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

इन बॉक्सेस पे अंडर गारमेंट्स के पिक्चर्स लगे हुए हैं।

सामने हमें बहोत से बडे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने गोरे रंग के कुछ शेयर --

सामने एक पानी की बोतल दिखाई दे रही है।

वाशिंग मशीन और कुछ बड़े रेफ्रिजरेटरस नजर आ रहे हैं साथ ही बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही हमें सामने एक बड़ा सा सफेद रंग का मकान नजर आ रहा है।

बिजली की तारे भी दिखाई दे रहें।

एक बहोत ही सुंदर मूर्ति को देख रहें हैं।

कुछ लोगों को देख रहे हैं।

पीछे हमें कुछ बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं साथ ही हमें सफेद रंग की दीवार भी दिखाई दे रही है।

शाम का समय नजर आ रहा हैं।

कुछ पे और घास हमें नजर आ रहे हैं सामने कुछ मकान भी है।

यहां हम सामने एक ऑफिस को देख रहे हैं।

हमारे सामने कांच के कुछ बड़ी रैक बने हुए हैं।

स्टेपलर और पेन नजर आ रहा है आगे हमें बहोत से लोग--

बीच में रेलिंग लगी हुई है।

जीसके नीचे कुछ लोग और गाड़ियां नजर आ रही हैं।

रैक पर हमें बहोत से समान दिखाई दे--